यहां पे दुकानें दिख रही हैं।

नो एंट्री का बोर्ड लगा है।

यहां एक बड़ा घर दिख रहा है।

यहां एक गार्डन दिख रहा है।

ये एक बैंक की फोटो है।

एक पुतला तबला बजा रहा है।

यहां बहोत सारे गेम दिख रहे है।

यहां पे काले बादल दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक टूटा घर दिख रहा है।

यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां एक पानी का नल लगा--

नीचे एक फोटो दिख रही है।

मुझे एक फोटो दिख रही है।

मुझे एक फोटो दिख रही है।

ये एक मस्जिद की फोटो है।

यहां आस पास घर दिखाई दे रहे हैं।